अअअ एक प्रोजेक्ट बना रहे है एक बच्चा नीचे बैठे हुए है।

यह तस्वीर एक चर्च की है इस चर्च में दो पीले कलर के बोर्ड लगे हुए हैं।

यह तस्वीर मे कुछ लड़कियां योगा करते हुई नज़र आ रही हैं नीचे योगा मैट अ हैं।

और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे पेड़ के पीछे--

एक माल माला टूटी हुई हैं और इसमे--

पेड़ के बाजू में कवेलो का घर दिखाई दे रहा है पुतले के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

ये तस्वीर एक एटीएम की दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोग एक लाइन में ल..खड़े है।